में नीला आसमान दिखाई दे रहा है चांद दिखाई दे रहा है और एक झांकी दिखाई दे रही है झांकी में काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और यह तीन देवियां है और गणेश जी भगवान है।